बांने हुए एक खड़ा है और उसने उस जाकी को पकड़ा हुआ है।

और यह बिल्डिंग व्हाइट कलर के से पेंट है।

और एक पेड़ से तो ऊपर बल्ब निकला हैं और एक पेड़ भी हैं।